किनारे तरफ़ गमले और पेड़-पौधे लगे हैं।

नीचे तरफ एक आदमी खड़ा है जिसने अपने गले में गमछा डाला है।

बैंक और बैंक का ए.टी.एम. दिखाई दे रहा है सामने तरफ एक छतरी लगी हुई है जिसमे बैंक का स्लोगन डला हुआ है।

ये कुछ फोटो हैं जिन पर माला चढ़ी हुई है नीचे पूजा का सामान रखा हुआ है।

सामने एक आदमी अपने उल्टे हाथ में एक पर्चा लेकर खड़ा है दूर एक गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही है।

उन्होंने चप्पल पहनी हुई है और पीछे की तरफ लाइट दिखाई दे रही है।

केरेट टमाटर पत्ता गोभी बंधा मिर्ची भिंडी सभी चीज़े हैं यहाँ --